एह कपड़े की दुकान का नजारा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े रखे हुए जैसे जींस है सूटर है सूटर वगैरह लाल रंग के कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

ऊर्ज में एक नीले कलर का गेट लगा हुआ है इसके आजू बाजू मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

यह पेट्रोल टैंक का नजारा है यह दो बाइक वाले खड़े हुए है और पेट्रोल डलवा रही हैं।